यहाँ सामने कुछ कुर्सियां है। कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में अवतार है। किसी के हाथ में खाना वगैरा है।